बाहापार ए.सि नाजार आरहा हे सफेद रंगके साफ़ी बेलूनस उहापार नाजार आरहा हे जो नीले और पीले रंगके दिखाई देरहे हे वही बाहापार काफी जो बैंक इम्प्लॉईस हे बा दिखाई देरहे हे।

काफी एक बड़ा जगह नजर आ रही है नजर आ रही है छोटी सी उसकी धार दिखाई दे रही है वहां पर और वहां पर तट पर काफी नजर आ रही है।